इस तस्वीर में एक महात्मा बागेश्वर उद्यान दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक मंदिर दिखाई दे रहा है और इसके बाहर एक काले कलर का गेट लगा हुआ है।

यह घर के ऊपर एक सफेद कलर की टंकी रखी हुई है और उसके बाजू में एक नीली कलर की टंकी रखी हुई है और पीछे स --

और बिल्डिंग के सामने दो आदमी दिखाई दे रहे है जो कि कहीं जा रहे है।

खेत दिखाई दे रही हैं और इस खेत में छोटे छोटे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग में उनके सामने तीन पेड़ लगे हुए हैं और बिल्डिंग के बाहर घास लगी हुई है।

कुछ डिजाइन बनी हुई है और ऊपर सीलिंग में भी कुछ चक्को की डिजाइन बनी हुई है।

इस तस्वीर में एक गो एक पहाड़ी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक बंदर का स्टेचू दिखाई दे रहा है जो की पत्थर का है।

और उसके बाजू में खाई दिखाई दे रही है खाई के बाजू में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जो की हरे कलर के है।

दिखाई दे रही है जो की चंद्रपुर में है और इसके सामने एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमें लाल कलर की बॉर्डर --

ये स्टेट और सी बी एस ई की कोचिंग दी जाती है और इसमें एक --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

इस तस्वीर में बहुत सारी स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रही है जो की थाली के ऊपर रखी हुई हैं उस स्ट्रॉबेरी में पत्ते लगे हुए हैं--